और यहाँ पर खुप साले आ आ बरगद के पेड़ लगे हुए है। यहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते है।